यहां पर एक फोटो में बहुत सारे पेड़ दिखाएं गए हैं बहोत ही अच्छे-अच्छे तरीके के यहां पर फोटो --

बहुत सारा पानी है पानी के अंदर यहां पर तीन भैंसे दिखाई दे रही है झोपड़ पट्टिया यहा पर दिखाई गई है पेड़ पौधे बड़े बड़े दिखाए गए हैं।

रात का ये सीन है यहां पे लाइट मैं यहां चशा हुआ दिखाई दे रहा है।

टेंटों से यहां पर कपड़ों से और यहां से एक बैलूनों से--

वो कुछ भी काम नहीं कर रहा उसके हाथ में एक किताब भी दिखाई दे र--

एक ही अंकल यहां पर दिखाई दे रहे हैं धूप है यहां पर दिखाई दे रही है यहां पर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं बहुत ही बड़ा यहां पर ग्राउंड सा नजर आ रहा है।

मुझे यहां पर एक दुकान दिखाई गई है यहां पर दो कुर्सियां डली हुई है एक लाल रंग की मशीन भी डली हुई है।

ऊपर जो है यहां पर छत के ऊपर ए_सी लगी हुई है अंदर भी ए_सी लगी हुई है छत के ऊपर यहां पर--

लाइटिंग हुई है दीवार से एक अंकल जी भी यहां पर दिख रहे हैं दूल्हे का फोटो नहीं दिख रहा है एक अंटी दिख रही यहा पे वीडियो रील वाला--

सामने गणेश महाराज जी की बहुत ही अच्छी स्टैचू यहां पर तस्वीर दिखाई गई है एक लड़का उस तस्वीर के सामने खड़ा है।